ये एक दो नाव की तस्वीर है जहां ये नाव पानी के ऊपर खड़ी हुई है ये एक नाव पे ए_सी भी लगा हुआ--

जहां ये लोग एक गाड़ी पे एक गाड़ी बनी हुई ले के जा रहे हैं जो एक बच्चों को प्रभावित करने के लिए स्वयं जा रहे हैं।

होटल के एक खूबसूरत कमरे में कई तकिए करीने से लगे हैं क्रीम रंग की कुर्सियाँ और क्रीम रंग के पर्दे भी हैं।

ये हाथ से फोटो खिंचा हुआ दिख रहा है जहाँ व्यक्ति जंगल के आगे एक फ्लावर की फोटो दिखा रहा है यहाँ बोहत सारी पेड़ पौधे भी देखे जा सकते है और इस के हाथ में खूबसरत सा फ्लावर --

ये एक बड़ा सा पहाड़ है जो एक पत्थर से बना हुआ पहाड़ दिख रहा है जिसपे लोग ऊपर चढ़ते हुए भी देखे जा सकते हैं एक पेड़ और बहुत सारी सूखी घास भी दिख रही--

यहाँ मुझे तीन आइसक्रीम दिख रही हैं ज जो पहली आइसक्रीम हैं वो उसका वो वनिल्ला फ्लेवर की हैंऔर बीच वाली मैंगो और तीसरी वाली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की हैं।

एक फ्रूट की फ्रूट्स की दुकान दिख रही है जहां ये बन्दा फ्रूट्स बेचता हुआ भी दिखाई दे रहा है।